यहाँ पर एक बेड वगेरा लगा हुआ है और यहाँ पर चाय वगेरा के कप लगे हुए हैं और यहाँ पर एक डस्‍टबीन भी दिखाई दे रहा है।